कोई भी हवाई जहाज यहाँ से उड़ान नहीं भर रहा फिलहाल और यहाँ सुबह का मौसम हो रहा है। आसमान साफ है।

जिम के अंदर कसरत करने वाला सामान रखा हुआ है और यहाँ हमें कोई भी इन्सान नही दिख रहा है।

सड़क के किनारे से कुछ भोजनालय निकली रखी हुई है।

और यहाँ हमें कोई भी मनुष्य भोजन करता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमें फ़िलहाल केवल दो लोग दिख रहे हैं। यह ग्राहक हो सकते हैं।

ट्रैडमिल पर दोड़ रहे हैं सामने काँच पे हम देख सकते है की सुबह का समय हो रहा है और यहाँ जिम में चेहल पेहल मची हुई है|

यहाँ पर सुबह का समय हो रहा है और भीड़ भाड़ नहीं है शांति बनी हुई है।